विंडोस हमे यहां पे शो हो रहीं हैं जो परदे लगें हैं वो हमे शो हो रही है और सबके हाथ में हमे बाइबल शो हो रही है।

बिच में हमें नाव शो हो रही है पुल पे पे बहुत से लोग हमे आते-जाते नजर आ रहे है एक झोंपड़ी जैसी बनी वह हमे दिखाई दे रही है गाड़ि हमें दिखाई दे रही है उस पीछे पेड़ पोधे नजर आ रहा है।

यहाँ पे हमें यहाँ पे हमे एक सलून की ओपनिंग नजर आ रही है जहा पे फूलो से और बलून से उसको डेकोरेट किया गया है मिरर हमें यह शो हो रहे हैं। देन पानी के टैंक शो हो रहे हैं चेयर्स हमे यहाँ शो हो रही हैं।

टायर्स हमे यहां पे शो हो रहे हैं कुछ हमे यहां पे शो हो रहे हैं साइकल्स हमे यहां शो हो रहीं हैं आ कुछ लोग हमे यहां पे अ शो हो रहा है बॉक्सेस नजर आ रहे है।

और ट्रीज यहां पे ट्रीज बना हुआ है वो हमे नजर आ रहा है चार्टस लगे है वो हमे यहां पे नजर आ रहे है कलर फुल पिंस लगी है वो यहां शो हो रही हैं बेंचेस शो हो रही है विंडोस हमे यहां पे शो हो रही है।

यहॉं पे हमें फूलों की दुकान नजर आ रही है यहाॅं पे फूलों की माला बनाई गई है तीन प्रकार कर अलग फूलों की माला यहाँ बनाई गई है सफेद फूलों की मोगरों की।

कुछ लोग हमें यहां पे नजर आ रहे हैं किसी का नाम लिख लिखा है वो हमें यहां पे नजर आ रहा है और पीछे का पहाड़ हैवो नजर आ रहे है।

बहुत सारे चीज़े रखी हुई है बिस्किट्स यहाँ पे नज़र आ रहे है कॉफ़ी मशीन यहाँ पे शो हो रही है कप शो हो रहे हैं।

अ यहाँ पे हमें रेलवे स्टेशन की बाहर की पिक दिखाई दे रही है जहँ पे रेलवे स्टेशन का नाम लिखा गया है वो हमें दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का रेलवे स्टेशन है पूरा वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है चद्दर का शेड है ब्रिज यहाँ पे वो हमें शो हो रहा है।

देन टब रखे है उसमे बकेट्स में फिशेस रखी है बहुत सारी हैं।